मुझे एक तलाब दिखाई दे रहा है। तलाब के बीच में एक खंभा दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक पेड़ भी दिख रहा है और एक ढाबा भी दिख रहा है।